एक घूमने की जगह है | यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग घूमने भी आए हुए है |

यह एक कपड़ो की शॉप है और यह रोड पर है।